चित्र मे एक दुकान है जो दुकान का रंग लाल और उजला है।

और पीछे बहुत सारे घर भी हैं और ऊपर आकाश है।

और इस घर के अंदर बहोत सारे छोटे छोटे पौधे भी है।

और उसके ऊपर बहोत बड़ा ग्राउंड है जहां पर बहोत सारे छोटे छोटे घास है और बड़े बड़े पेड़ भी है।

और इस नाई की दुकान में बहुत सारी लाइटें जल रही है और ऊपर पंखे भी चल रहे हैं।

जो की अपने हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए हैं और वो बजा रहे है।

और एक बच्चे के पीछे बाउंड्री दी हुई है।

चित्र में एक स्टेशनरी का दुकान है जहां रैक पर बहुत सारी किताबें कॉपीया रखी हुई है।

और उस पेन का कलर लाल है और नीचे काउंटर ब बहुत सारे पेने के डब्बे--

और बगल में एक लोहे का अल्बेस्टर है जिसके नीचे बहुत सारे लोग हैं।

और इस रूम में दरवाजे भी हैं और इस रूम में बहुत सारी कुर्सियां भी है और टेबलें भी हैं।

टेबुल के ऊपर बाटर बोतल रखा हुआ है।

आगे एक आदमी लाल कलर का दुपट्टा पीने खड़ा हुआ है और उसको ऊपर पीले कलर का कपड़ा है।

इस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और इस बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ा नीला कलर का जेनरेटर भी लगा हुआ है।

इस चित्र में एक किला है यहां बहुत सारे चट्टानें हैं छोटे छोटे और बड़े बड़े।

एक बच्चा ब्लू कलर का शर्ट और व्हाइट कलर का हॉफ पैंट पहना हुआ है।

इस गार्डन में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी हैं।

चित्र में एक बिल्डिंग है जिसका रंग व्हाइट है और उसके ऊपर लाइटें जल रही है।

और पीछे एक मंदिर भी है और इस चित्र में बहुत सारे पेड़ है।